चित्र में गिटार नजर आ रहा है।

जिसमें एक दुकान नजर आ रही है।

चित्र मे बालाजी यूनिवर्सल बोर्ड दिखाई दे रहा है।

बैंक का नाम यूनियन बैंक है।

चित्र में तीन सफेद रंग की कार नजर आ रही है।

व छे पुरुष नजर आ रहे हैं।

चित्र एक दुकान का नजर आ रहा है।

दुकान का नजर आ रहा है।

चित्र में एक दुकान भी नजर आ रही है।

बीच में एक नदी नजर आ रही हैं।

होटल का नाम नवोदयन होटल काका श्री है।

हरे रंग के पेड़ नज़र आ रहे--

एक महिला पेड़ो को पानी देती हुई नजर आ रही है।

दुकान डेरी पार्लर नजर आ रहा है।

जिसमें एक पेड़ नजर आ रहा है।

लड़के ने नीले रंग की टी शर्ट पहनी हुई है।

चित्र में दो कार नजर आ रही हैं।

यह एक गैराज का फोटो है।

चित्र में सोलर पैनल नजर आ रहा है।

एक बार काले रंग की बाइक पर आदमी नजर आ रहा है।

चित्र मे बहोत सारी पेंटिंग नजर आ रही है।

दो चिमनियाँ नज़र आ रही हैं।

लड़के ने पर्पल रंग की टी शर्ट पहनी है।

दुकान में बहोत सारा सामान नजर आ रहा है।

बिल्डिंग पर मशाल स्कूल ऑफ होटल मैनेजमेंट लिखा हुआ है।

चित्र में एक ढाबा नजर आ रहा है।

सामने से एक आदमी नजर आ रहा है।

चित्र में बहुत सारी टाइल्स नजर आ रही है।

चित्र किसी होटल का नजर आ रहा हैं।

चित्र में एक महिला नजर आ रही हैं।

एक बिल्डिंग का रंग मेहरून व दूसरी बिल्डिंग का रंग सफेद नजर आ रहा है।

पीले रंग का कपड़े पहने हुए हैं।